और उस साइड में एक स्कॉर्पियो लगा हुआ है। और दो स्वीट भी उधर --

और कुछ ऑन्टीया लोग भी हे.

यहां पे एक घंटा घर है।

यह एक पी एक दो आदमी उस साइड में है.

एक भाई बना रहे हे स्कारपीओ .

यहाँ पे एक गेट नंबर चार हे.

यहां पे एक मकान है दो तल्ले.

दरवाजे का कलर व्हाइट --

सोफे लगे हुए हैं फूल से सजाया हुआ है।

और यहाँ एक भी आदमी नहीं हे.

यहां पे फुल पौधे की दुकान है.

माता जी की काफी सारी आंटी दादी लोग बहन लोग पूजा कर रही है.

यहां पे न्यू ऑटो स्टैंड बनाया हुआ है ऑटो बिक्री के लिए.

और एक ड्राइवर व्हाइट कलर का कपड़ा पहने हु--

रख देने के लिए खड़े हैं.

पीछे दो स्कूल के बस लगा हुआ है।

और अंदर काफी साडी भीड है.

यहां पे एक मैरेज गार्डन है।

साड़ी का भी दुकान है.

यहां पे एक रेस्टोरेंट लग रहा है.

इसके अंदर कोई भी समान नहीं है.

ऊपर ईस्काई दिख रहा है। आसमान दिख रहा है नीले कलर की--

यहां एक रूम है जो ये रूम फिनिशिंग किया हुआ है.

यहाँ पे एक बड़ा हॉल के अंदर बैठे हुए हे चार पांच लोग.